यह तस्वीर किसी होटल का नजर आ रहा है।

और उसने सन ग्लासेस भी लगा रखे हैं।

नदी के उस तरफ मिट्टी का एक टापू है।

जहां पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।